चित्र में बस स्टैंड दिखाई दे रहा है बहोत सारी बसे दिखाई दे रही है।

चित्र में बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा है ऊपर क्रॉस का निशान दिख रहा है।

इसमें ोरो बिस्कुट दिखाई दे रहे है शॉर्ट्स दिखाई दे रहे है किटकैट चॉकलेट डेरी मिल्क चॉकलेट भी दिखाई दे रहे है।

चित्र में बड़ा सा दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

चित्र में बड़ा सा भारत का झंडा दिखाई दे रहा है।

सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है एक हरा पेड़ दिखाईं दे रहा है।

इस चित्र में कुछ औरतों ने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है उनके हाथ में मोमबत्ती जलते दिख रही है।

कमल के फूल और कलियाँ भी दिखाई दे रही है एंगल दिखाई दे रहा है लाल कलर का बोर्ड दिख रहा है।

क्रॉस के साइन दिखाई जा रहे है इसु मसीह की सुंदर-सुंदर चित्र लगे हुए दिखाये जा रहे है।